यहा पे एक पूल है पूल के नीचे बहुत ही बड़ा कुँवा है ऊपर से पानी आ रहा है और उस कुए मे हरा-हरा है।

कई हरे-भरे पौधे भी लगी हुए है गोद मे गुलाबी पुष्प खिल रहे है पानी है पत्थर है।

यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजली का खंबा है उसके पास ब्लू कलर की पल्ली पड़ी हुई है। उसके पास इट भी पड़ी हुई है उसके पास पत्थर भी पड़े हुए है।